बहुत ही अच्छी मंदिर है बहुत अच्छा सिंगर दिखने में लग रहा है बहुत ही अच्छा और प्रतीक लग हैं।

यह एक मंदिर ये बहोत ही अच्छा मंदिर है बहोत इसे इसे बहोत ही मस्त मंदिर जिसमें भक्तों का बहोत हुआ और बहोत ही सुंदर मंदिर है और माता जी का मंदिर है।